ग्राउंड टाइप का बना हुआ है ग्राउंडओ में टाइल्सें लगी हुई है।

जो मजार में बैठे हुए हैं और जहां बैठे हुए हैं वो चादर लाल कलर की है।

और एक दुकान का नाम हेमंत हेयर सलून है।

यहां पर कुछ कुर्सियां और कुछ टेबलें और कुछ--

और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है और ऊपर सीलिंग बनी हुई है।

मेरे ख्याल से जमीन में गती हुई है और जमीन में रेता हैं।

जो कि वो स्टील का लग रहा है और वो रोड में डला हुआ है और रोड का कलर ब्लैक है।